ये घर का हॉल है अअ जिसमें देख अ खिड़की लगी हुई है।

और पीछे हैंगर पर कुछ टी-शर्टें भी लगी हुई हैं और साइड से एक पर्सन खड़ा हुआ है जो आधा ही दिख रहे हैं और लाइटिंग लगी हुई हैं।

और जो बीच में जो बैठी है महिला वो अ कुछ सॉन्ग गा रही हैं।

पीछे पोस्टर लगा हुआ है और साइड से एक चेयर अअ तीन चेयर भी रखी हुई है माइक भी लगे हुए हैं.

ये जानवर है जहाँ तक लग रहा है ये वाइट टाइगर है और पीछे जंगल है और साइड से एक पेड़ लगा हुआ है।

और पीछे एक गेट भी लगा हुआ है लोहे का।

ये सीनियर है जो एक ब्रेंच पे एक्सरसाइज सिखा रहे हैं बता रहे हैं इनको कि किस तरह से एक्सरसाइज करनी है.

ये एक स्टॉल है जिसमें अअ एक पर्सन है जो चाय पीते हुए नजर आ रहा है।

और एक पर्सन है जो बैठा हुआ है मास्क लगाकर और एक पर्सन है जो ग्राहक को दे रहे हैं।

इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है की ये एक हॉल जैसा ही लग रहा है एक पर्सन है जो सोफा पर बैठा हुआ है पर्सन के पास--

इधर सीढ़ियां है साइड से लेफ्ट साइड में सीढ़ियां लगी हुई है और--

इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एक पर्सन है जो अ बाइक को वॉश कर रहे हैं।

कुछ लोग हैं जो इसका एंजॉय कर रहे हैं और बीच में एक लट्ठा भी खड़ा हुआ है।

साइकिल है जो खड़ी हुई है ये यहाँ दो पर्सन हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं कुछ सामान लेने के बाद--

ये एक बौद्ध भगवान की मूर्ति है अ जिसे ही हम लोग पूजा करते हैं और इनका कलर है--

इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि किसी की शादी हो रही है अ ये बहोत बड़ा मैरिज होम है और साइड से पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं.

इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि कुछ अअ इसमें अअ गोल्ड लॉन और एक्सिस बैंक के इनके पोस्टर लगे हुए हैं।

ए_टी_एम का भी लगा हुआ है आंध्र बैंक का और कुछ बाइकें हैं जो खड़ी हुई हैं।

एक पर्सन है जो अपनी बाइक के पास ही खड़ा हुआ है और ये लाइट के खंबे भी लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि इसमें एक पोस्टर लगा हुआ है स्पिरिचुअल योगा और इसके नीचे--

गाड़ी है जो आधी दिख रही है पूरा नहीं और इसमें सामने ही फ्रंट पे ही इसमें कचड़ा भी दिख रहा है इसमें पेड़ गिरे हुए --

इसमें दिख रहा है कि येह एक बिल्डिंग है जिसमें अ वन टू थ्री फोर फाइव फाइव फ्लोर की बिल्डिंग है।

और बिल्डिंग में कुछ मेंबरों के कपड़े भी सूख रहे कुछ गमले भी रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि किसी की बर्थडे पार्टी है या कुछ फंक्शन है जिसमें बहुत सारे बलून लगे हुए हैं ऊपर छत पे।

इस सड़क पे जा रहे हैं इधर एक रिक्शा वाला है एक रिक्शा ले के जा रहे हैं दो साइकिल पर जा रहे हैं एक मोटर साइकिल पर भी जा रहे हैं।